और इसमें गैलरी भी है।

और पीछे उसका पेट्रोल पंप वाले का ऑफिस है।

संतरे हैं गाजर हैं।

मिठाइयां हैं और भी बहोत सारी चीज़ें हैं और ये पीछे अचार भी रखे हुए हैं।

कॉलेज है ये बहोत अच्छा।

यहाँ पे बच्चे आके बैठते हैं और ये एक डेस्क है जिसपे कॉपी रखते हैं।

और कभी कबार वो वहाँ पे से गिर भी सकते हैं तो डर रहता है बहुत ज्यादा।

ये मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं।

जोकि एक मॉल में तब्दील हो गया है क्यूंकि यहाँ पे एक शादी हो रही है।

और ऊपर गोल्ड लोन के वो लगे हुए हैं और एन.आई.टी. की परीक्षा के लिए भी वहां अपील कर सकते है साइबर कैफे है।

और ये नदी है और यहाँ पे बीच है।

कुछ लोग इंतज़ार करते हैं।

ये गाजर है बीच में और चारो लेग पीस रखे हुए है अच्छे से --

ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे लोग आते हैं।

यहाँ से आप जाओगे तो सीधे एक रास्ता देख रहे हो ये एक सड़क है और एक वेलकम बोर्ड है।

जहाँ पे कैदीस को रखा जाता है और पुलिस की नजरें रखी जाती है यहाँ पे पॉपुलर मेडिकल भी है।

और ये आंटी बेच रही है।

ये जाइका रेस्टोरेंट है जो कि होटल आर गार्डन के पास है।

और ये माँ सीता का वो फैन का वो है एलेक्ट्रस --

इ गणपति पंडाल है जहाँ पे गणेश जी की पूजा की जाती है।

जहाँ पे ईशा मसीह की पूजा की जाती है।

पानी में है और वो भी नाव पे बैठेंगे।

आ रहा है यह उड़ने की प्रति वो कर रहा है।